नदी के पास है एक नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है।

आगे की ओर एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

ऊपर की ओर लाइट भी जसी हुई है।